काफी बड़ा जंक्शन दिख रहा है जंक्शन में जाने का रास्ता दिख रहा है और आस-पास में पेड़ दिख रहें है और पेड़ धुंधले दिख रहे है।

एक रेस्टोरेंट दिख रहा है रेस्टोरेंट के सामने कुछ चेयर लगी हुई है और टेबल ल लगी हुई है बोतलें रखी हुई है पानी के ऊपर और कुछ बाइक रखी हुई है एक बाइक है जो ब्लू ब्लैक कलर की दिख रही है।

तालाब दिख रहा है तालाब काफी लंबा फैला हुआ है क तलाब के अंदर पानी दिख रहा है पानी व्हाइट कलर का दिख रहा है और यहाँ पर एक रोड दिख रही है जिसपे मिट्टी दिख रही है सत्ता दिख रहा है छोटे -छोटे घासे दिख रही है हरे कलर की--

और एक रेस्ट्रोन्ट है इसके ऊपर एक यहाँ पे पंखे लगे हुए है कुछ और यहाँ पर फोटोस लगे हुए है दीवार के ऊपर एक विंडोज दिख रहा है दरवाज़ा दिख रहा है।